नमस्कार gchempaint में editing molecules के tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न सीखेंगे
परमाणु पर unbound electrons जोड़ना
carbonic acid और sulphuric acid structures बनाना
परमाणुओं के समूह पर local charge जोड़ना और रूपांतरित करना
हम निम्न भी सीखेंगे
एक परमाणु पर local charge जोड़ना और रूपांतरित करना
cyclic अणुओं को जोड़ना
monocyclic अणुओं को बाईcyclic अणुओं में बदलना
यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ उबन्टु लिनक्स os version 1204
gchempaint version 01210
इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको gchempaint केमिकल स्ट्रक्चर एडिटर के साथ परिचित होना चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित tutorials के लिए हमारी website पर जाएँ
मैंने एक नयी gchempaint application खोल ली है
सबसे पहले ammonia ammonia का structure बनायें
current element current element drop down button पर click करें
सूची से n select करें
टूलबॉक्स में n को देखें
add or modify an atom tool पर click करें
फिर display area पर click करें
डिस्प्ले एरिया पर nh
capital h दबाएं h से शुरू होने वाली अवयवों की सूची वाला एक menu प्रदर्शित होता है
सूची में से h select करें
add a bond or change the multiplicity of the existing one tool पर click करें
nitrogen परमाणु में तीन bonds बनाने के लिए
nitrogen परमाणु पर bonds को तीन बार click करें और खींचें
pyramid pyramid जैसा structure बनाने के लिए bonds की स्थिति निर्धारित करें
nitrogen परमाणु पर bound electrons का एक युग्म जोड़ें
add an electron pair to an atom tool पर click करें
फिर ammonia के nitrogen परमाणु पर click करें
बदलाव देखें
ध्यान दें कि अब ammonia के nitrogen के पास electrons का एक युग्म है
यह युग्म bonding में हिस्सा नहीं लेता है
electrons के इस युग्म को lone पेअर lone pair कहते हैं
एक नियत कार्य की तरह phosphorus trichloride का structure बनायें
phosphorus परमाणु पर bound electrons का एक युग्म जोड़ें
अब carbonic acid h
यहाँ carbonic acid और sulphuric acid के लिए structures हैं
पहले अमोनिया स्ट्रक्चर को एक तरफ स्थानांतरित करें
ऐसा करने के लिए select one or more objects tool पर click करें
फिर ammonia structure पर click करें और इसे एक तरफ खींचें
अब carbonic acid structure बनायें
current element dropdown arrow button पर click करें
सूची से c select करें
add a bond or change the multiplicity of the existing one tool पर click करें
display area पर click करें
तीन bonds की स्थिति को ऐसे निर्धारित करें कि ये उल्टा y बनायें
चौथे bond को किसी भी एक bond पर इस प्रकार बनायें कि double bond बने
अब current element dropdown arrow button पर click करें
o select करें add or modify an atom tool पर click करें
bonds के पास cursor रखें
bond की तीन स्थितियों पर click करें
carbonic acid h
अब sulphuric acid structure बनायें
current element dropdown arrow button पर click करें
s select करें add or modify an atom tool पर click करें
फिर display area पर click करें
h
अब display area पर कहीं भी बड़ा o दबाएं
o और os के साथ एक menu खुलता है
o select करें
add or modify an atom tool पर click करें
फिर add a bond or change the multiplicity of the existing one tool पर click करें
property menu पर bond length की value को 200 या उससे ज़्यादा बढ़ाएं
oh के तीन बॉन्ड्स s पर बनाने के लिए h
s के पास एक धनात्मक charge देखें
यह प्रदर्शित होता है क्योंकि sulphur को 6 valency संतुष्ट करनी है
चौथे bond के लिए पहले s पर click करें
mouse को छोड़े बिना bond को एक तरफ खींचें
double विपरीत bonds को double bonds में बदलें
add a bond or change the multiplicity of the existing one tool पर click करें
फिर structure के विपरीत मौजूदा bonds पर click करें
ध्यान दें कि धनात्मक charge अब नहीं रहा
sulphuric acid का structure पूर्ण हो गया है
add आगे carbonic acid और sulphuric acid structures पर local charge जोड़ें
local charge प्रदर्शित करने के लिए decrement the charge of an atom tool पर click करें
carbonic acid structure के दो oh समूहों पर click करें
देखें कि carbonate ion co
sulphuric acid structure पर local charge देखने के लिए
decrement the charge of an atom tool पर click करें
sulphuric acid के दो विपरीत oh समूहों पर click करें
देखें कि सल्फ़ेट आयन so
एक नियत कार्य की तरहनाइट्रिक एसिड hno
nitrate आयन no
आपका पूर्ण नियत कार्य इस प्रकार दिखना चाहिए
add मैं जल्दी से प्रदर्शित करती how कि परमाणु पर एक local charge कैसे जोड़ते हैं
display area पर कहीं भी बड़ा n दबाएं
menu खुलता है इसमें से na select करें
add or modify an atom tool पर click करें
फिर display area पर click करें
display area पर sodium परमाणु प्रदर्शित होता है
increment the charge of an atom tool पर click करें
फिर na पर click करें
sodium परमाणु पर धनात्मक charge देखें
इसी तरह हम परमाणु पर एक ऋणात्मक charge जोड़ते हैं
decrement the charge of an atom tool चुनकर ऐसा हो सकता है
अब cyclic cyclic अणुओं को बनाना सीखें
इसके लिए हम एक नयी gchempaint window खोलेंगे
toolbar पर create a new file icon पर click करें
निश्चित करें कि c जो की carbon है अवयव की तरह selected किया गया है
यह भी निश्चित करें कि bond length 200 या उससे अधिक हो
टूलबॉक्स में चौथी toolbar cycle tool है
यहाँ विभिन्न tools हैं जो हम उपयोग कर सकते हैं
उदाहरण के लिए
add a three membered cycle
add a four membered cycle
और कुछ अन्य cycle tools
और फिर * add a cycle tool
हम add a four membered cycle टूल उपयोग करेंगे
अतः इस पर click करें
फिर display area पर click करें
cycle के कोनों पर परमाणुओं को जोड़ें
किसी एक कोने पर right click करें
एक menu खुलता है atom select करें और फिर display symbol पर click करें
इसी तरह सारे कोनों पर परमाणु जोड़ें
प्राप्त structure cyclobutane cyclobutane है
अब monocyclic compound को बाईcyclic compound में बदलें
add a six membered cycle tool पर click करें
फिर display area पर click करें
cursor को cycle के bond पर रखें और फिर से click करें
bicyclic compound को देखें
file सेव करने के लिए toolbar पर save the current file icon पर click करें
save as dialog box खुलता है
file का name editing मौलिक्यूल्स editing molecules enter करें
सेव button पर click करें
इसको सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने निम्न सीखा
परमाणु पर unbound electrons जोड़ना
carbonic acid और sulphuric acid structures बनाना
परमाणुओं के समूह पर local charge जोड़ना और रूपांतरित करना
हमने निम्न भी सीखा
एक परमाणु पर local charge जोड़ना और रूपांतरित करना
cyclic अणुओं को जोड़ना
monocyclic अणुओं को बाईcyclic अणुओं में बदलना
एक नियत कार्य की तरह
display area पर seven membered seven membered cycle जोड़ें
इसको ट्राईसाइक्लिक compound में बदलें
इस url पर उपलब्ध video देखें